यहां हम देख सकते हैं हमें कुछ यहां पे लेडीसे से दिखाई दे रही हैं जोकि हम देख पा रहे हैं सब पूजा कर रही हैं।

और हमें सामने आप देख सकते हैं यहां पे आधार सेवा केंद्र दिखाई दे रहा है और यूनियन बैंक ये काफी बड़ी बिल्डिंग है इसमें नीचे खोल रखी --

यहां पे हमें एक बहोत ही बड़ा सारा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ा है।

शॉप दिखाई दे रही है शॉप पे हम देख पा रहे हैं टी शर्ट टॉपर जैकेट सब कुछ--

यहां आप देख सकते हैं ये एक किराना शॉप है और इस शॉप पे काफी सारा समान हमें देखने को मिल रहा है।

इसके आसपास और भी काफी सारी शॉप्स हैं उसके बाद ये छोटी छोटी पौधे काफी प्यारी लग रहे--

आप खुद देख सकते हैं यहां पे और दो जेंट्स हैं जो कि अंदर खड़े हैं और छोटे-छोटे से बच्चे बाहर दिख रहे हैं अंदर --

यहां हम देख सकते हैं ये एक डॉक्टर का रूम है और आप देख लीजिए काफी सारा सामान यहां पे रखा हुआ है जैसे डॉक्टर की चेयर है।